इस फोटो में बालकॉनी दिख रही है और सारा घर बढ़िया से लाल कलर में पैंट हुआ है।

और आधे में हरे कलर का पर्दा लगा हुआ है बाकयदा बिल्डिंग में एक तरफ तो पुरे ईटे है मजदूर को दिखाए है।

क्या चीज़ का तो ले रहा है फोटो भगवान जाने और साइकिल वाईकिल खड़ी--

ये फोटो में कोई मूर्तिकार का दुकान को दिखा रहा है और उसने बहुत ही सुन्दर-सुन्दर फोटो --

और रेड कलर का लेगीस पेहनी है और गाय के पास से गुजर रही है।

और बढ़िया गाड़िया-वाडिया भी रखी हुई है।

और एक का य पंडाल के साइड मे एक ब्लैक कलर का स्कूटी खड़ा हुआ है।

ये कार गैरज की फोटो है और कार का नंबर है वन --

एस जीरो नाइन इ के टू जीरो थ्री --

बहुत सुन्दर तरीके से इस फोटो को लिया गया है बढ़िया यहाँ पे बड़े-बड़े पत्थरे है और बहुत दूर-दूर तक का--

जो की देख सकते है की सारी फॅमिली यहाँ पर आई हुई है बढ़िया--

ये तो बढ़िया वी टू कोई दुकान की फोटो है जो आप देख सकते है की ये दुकान की जो फोटो है।